इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रही है।

इसमें मुझे कुछ नीली टंकी दिख रही है।

इसमें मुझे लाल रंग का किला दिख रहा है।

इसमें मुझे एक दुकान दिख रही है।

इसमें मुझे हिमालया की दवाई दिख रही है।

इसमें मुझे बड़ा मैदान दिख रहा है।

शासकीय जिला पशु चिक चिकित्सालय दिख रहा है।

इसमें मुझे हरा मैट बिछा दिख रहा है।

इसमें मुझे वि टू माल दिख रहा है।

इसमें मुझे खम्भे और तारें दिख रही है।

इसमें मुझे बाहर बहुत भीड़ दिख रही है।

दीवार में बना डिजाइन दिख रहा है इसमें मुझे--

इसमें मुझे बहोत सारे चश्मे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ बड़े लोग दिख रहे हैं।

मुझे इसमें कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं।

मुझे इसमें बच्चे रंग उड़ाते दिख रहे हैं।

मुझे इसमें बाहर कुछ मशीने दिख रही है।

मुझे इसमें समुद्र दिख रहा हैं।